ओ और यहां पे नीचे छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं बगल में--

जिसके बगल में कुछ लोग बैठकर और इधर उधर बातें कर रहे हैं।

अ एक पिंक कलर का कपड़ा पहने हुए एक हल्का पीला और एक सफेद कलर का और एक--

और यहां पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है एक यहां पे टेबल है और एक पिलर पे लिखा हुआ है सी_एस_सी ।

बगल में ब्लू पिला--

जहां का मौसम अच्छा है अ पीछे बहोत हरे भरे घास लगे हुए हैं जोकि देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं।

एक कॉलेज का फोटो है जहां पर महंत राम रूप गोस्वामी महाविद्यालय लिखा हुआ है।

उम्म फ्रेम भी बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए हैं एक सरस्वती माता जी का फ्रेम है और एक घोड़ों का फ्रेम है।

क्रिकेट देख रहे हैं और लोग कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं बगल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।